इस तस्वीर मे एक लड़का बैठा हुआ है जो कुछ बच्चों को बिस्कुट बांट रहा है।

यह तस्वीर एक बड़े से मैदान की है जहां पर कई सारी छोटी-छोटी इमारतें भी है।

यह चित्र एक मदरसे की है जिसका रंग सफेद है।

यह तस्वीर एक शादी की है जिसमें बहुत सारे लोग आए हुए है और दूल्हा-दुल्हन भी खड़े हैं।

इसके पास में कई सारे बड़े- बड़े पेड भी लगे हुए है और आसमान में नीला और सफेद कलर के बादल है ।

यहाँ पर वो खाना भी खा रहे हैं उस टेबल का रंग लाल है।